बच्चे बड़े वाले खेलने के लिए डिफ्रंट-डिफ्रंट का खेलने का सामग्री है इधर ये हरे पेड दिख रहे है पुरा।

बड़ा हैअह एक इंसान बैठा है बूड़िया बुड्डा इन्सान वो भेज रहा है ज्यादा लोग आ रहा है खरीद रहा है।

पहाड़ पहाड़ दिख रहा है इसके पूरा लाल रंग से चल रहा है।

ये क्लीन कर रहा है वॉटर से दो इंसान बैठा है इधर।

इधर हम देखने तो यह फोटो में क्रिसमस का चर्च ख्रीचन का चर्च दिख रहा है एक पर्सन इधर खड़े के--